तस्वीर मे एक दुकान दिख रही है जिसमे जूते रखे हुए दिखाई रहे है और ऊपर की तरफ हिंदी मे उसपर कुछ नाम लिखा हुआ है और बाहर की तरफ एक पुतला खड़ा हुआ है।

इस तस्वीर मे आसमान नजर आ रहा है झाड नजर आ रहे है और एक बाख नजर आ रहा है जो पार्क मे बैठा है और कुछ पत्थरे नजर आ रही है।

तस्वीर में एक दुकान नज़र आ रही है जहा पर महिलाओ के चूड़िया चैने मिलती है।

और कुछ लोग योगा करते हुए नजर आ रहे है।

मे नाई की दुकान नजर आ रही है जो एक बच्चे के बाल बना रहा है उपर की तरफ एक बल्ब नजर आ रहा है सामने की तरफ आईना पीछे की तरफ आईना लगा हुआ है।

और मोटर्स कुछ मोटर साइकिले भी रखी हुई है।

इस तस्वीर में कुछ लड़किया नृत्य कला करते हुए नजर आ रही है इनके पीछे की तरफ कुछ दीवार पर चित्रकारी करी हुई है।

यह बहोत सी कुर्सिया नजर आ रही है दाएं बाएं तरफ दो दुकाने दिख रही है।